जो अलग अलग कलर के है कोई ब्लू है कोई पिंक है कोई येल्लो है कोई ग्रीन है जो देखने में बहुत सुन्दर है| उसके ऊपर एसी लगी हुए है | जो बहोत अच्छी --

और ये इसमें मिट्टी लगी हुई है। ये आलू जो में स्टार्च पाया जाता है जो सभी के लिए बहोत अच्छी है और इन आलू खाने से शरीर में फुर्ती आती है और बहोत अच्छा लगता है।

और जो यह मकान है पीछे वो ग्रीन कलर का है जुगनू कलर ग्रीन जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है बहुत सुंदर डेट्स --

ये दो बाइक रखी हैं जो रोड के उस पार है एक पर्पल कलर की है एक ब्लू कलर की है उसके बे पीछे जो है बहुत बड़ा समुद्र है।

जो बहुत ज्यादा ये अलमारी बनी हुई है यहाँ पर अलग अलग कलर की अंडरवियर अ रखी हुई हैं जो हर साइज़ की हर कलर की हैं।

र् कई तरह की छोटी-छोटी मछलियां पड़ी हुई हैं जो कटी हुई हैं। इन मछली ये मछलियां जो होती हैं मे समुद्र में मिलती हैं और इन मछलियों को खाया जाता है। बंगाल में मछली खाना फेवरेट फूड है।

दूर दूर हलकी हलकी ग्रीनरी है और पेड़ पौधे है इधर दूर काली मिट्टी भी है सब दिखने में बहुत अच्छे भी लग रहे हैं |

मंडी लग रही है जहां पर दो तीन व्यक्ति जो है फूलो को बेच रहे है जो अलग अलग कलर के है कुछ येलो कलर के है कुछ रेड कलर के हैं।